और दुकान के अन्दर एक वाशिंग मशीन रखी हुए है।

ये तस्वीर एक ऑफिस का है जो ऑफिस में कोई लोग काम नहीं करते --

इसीलिए सीट के ऊपर धुला हो गया है।